मुझे एक अं आंटी नजर आ रही है जिनके पीछे कुछ उनके बच्चे नजर आ रहे है और मॅट बिछी हुई नजर आ रही है पिंक ऑरेंज और ब्राउन कलर की जो --

मुझे कुछ लडके नजर आ रहे है तिन लडके नजर आ रहे है तिन लड़को के पिछे मुजे तिन लड़कियां नजर आ रहि है और उस्के पिछे मुजे एक लड़का नजर आ रहा है।

एक ओवन का नजर आ रहा है और उसके पिछे मुझे एक फ्रीज भी नजर आ रहा है उसके साथ मुझे साइड कुछ कप्स रखे भी नजर आ रहे है एक छ्न्नी भी नजर आ रही है और कॉफी की कुछ बना--

नीचे की तरफ़ मुझे एक टायर भी रखा हुआ नजर आ रहा है इसके साथ मे मुझे ऊपर की तरफ़ कुछ मजदूर करते हुए नजर आ रहे है लोहे की तरह लोहे की एक ऊपर की तरफ़ कुछ बड़ी-सी पत्रा नजर आ रहा है।